इसमें एक थाली है। थाली के अंदर बहुत सारे छोले तथा बगल में --

सामने की और लोहा नजर आ रहा है जिसके चार पंखे दिखाई दे रहें हैं तथा पीछे भी बहुत सारे इसी तरह के --

यह फोटो में एक बहुत बड़ा टेंट नजर आ रहा है टेंट टिन का है तथा उसके अगल-बगल आगे-पीछे --

और बीच में छोटे-छोटे बड़े-बड़े पेड़-पौधे --

ए.सी. लगी है। बगल में लाइट हैं। दीवार के ऊपर दो पोस्टर हैं और --

पत्तियां भी हो रखी हैं व सफ़ेद कलर और अ ऊपर से गुलाबी रंग का है |

लोहे के ऊप्पर सफ़ेद कलर की वस्तुऐं भी है।

इस फोटो के अंदर देख सकते है कि यह पानी भरा हुआ है तथा किनारे-किनारे पेड़ और पौधे भी है ।

तथा ब्रिज के बगल भी कई सिंगल पिलर लगे हैं जो की सफ़ेद रंग के हैं।

ब्रिज के निचे काफी गाड़ियाँ भी नजर आ रही है तथा सड़क भी है।

खेतों में काफी हरियाली फसल उग रखी है तथा खेतों के बीचो बीच मेढ़ भी बन रखे हैं।

जो की घोड़े के ऊपर बैठी है उसके पास दो घोड़े हैं।